और यहां पर अ एक नारियल का पेड़ दिखाई दे रहा है | बगल में और एक पपीते का पेड़--

अगर वो बीमार होते हैं तो उन्हैं यहां पर लेटा कर उनकी ट्रीटमेंट की जाती हैं उन्हैं मदद किया जाता हैं ताकि वो जल्द से दल्द ठीक हो सके।